और बड़े बड़े खंबे भी लगाए हुए--

ये एक ए_टी_एम है और उसके सामने बहोत सारी गाड़ियाँ भी हैं कार भी है।

दिखा रहा है और ये व्हाइट कुर्ता पहने हुए है और यहां ये सिंबल जीसस के सिंबल के सामने ये प्रे कर रहे हैं स्पीकर में।

एशड मारा हुआ हैं और यहाँ पे लकड़ियों को--

और यहां पे डम्बल्स देखे हुए हैं और यहां पे --

रनिंग मशीन भी रखे हुए है और यहां पे जॉगिंग मशीन भी है।

हार दाले गए हैं फूल से जो बनाए गए हैं पेपर --

और यहां पे दो लोग काम कर रहे हैं।

ये अंडरग्राउंड है और यहां पे घर बनाया जा रहा है और यहां पे नीचे सीमेंट कॉन्क्रीट मट्ठी--

और यहां पे राइट साइड में भी एक स्पीकर टूल रखा गया सामा --

और यहां पे छोटे अलग-अलग कलर्स के अलग-अलग झाड़ है।

एयरटेल रिचार्ज की दुकान भी है फोर जी की है और बोर्ड भी लगा हुआ है और राइट साइड में बड़ा सा पेड़ और पीछे--

ये एक जिम है और यहां पे बॉल भी है पेट के कम करने के लिए।

रेती भी पड़ी हुई हैं और यहाँ पे बड़े-बड़े दीवार भी खींचे हुए हैं और यहाँ पे बड़े-बड़े --

झाड़ा भी है और यहां पे बहोत सारे पेड़ उगे हुए और यहां पे बीच में--

ये बल्ब भी है और टायर्स बिछाये गए हैं।

बाईसाइकिले सभी पार्कड की गई है और यहां पर बीच बीच मे थोड़ी थोड़ी स्पेस है कारों को जाने के लिए।

और यहां पे लकड़ियां भी जले हुए है और यहां पे--

फ्रिज भी है और यहां पे वाटर बॉटल भी है और बैठने के लिए--

और जनता डायरी बोलके इसका दुकान का नाम भी है और बाजू भी एक पार्लर शॉप है--

हार पेहनाया गया है और उनके पास--